एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

हमें कुछ सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें एक खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है।

खिलौने डांसिंग कैक्टस और भी कई सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ झंडे।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप में हमें एक आदमी और एक औरत नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में हमे एक मजीद नज़र आ रही है।

यहां पर हमें जा नमाज़े दिख रही हैं।

एक घड़ी दिख रही है जिसपर मस्जिद की अजान का टाइम शो हो रहा है।

एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि कांच की बनी हुई है।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

पेट्रोल पंप के सामने हमें एक गेंडे हाथी की मूर्ति दिख रही है।

ऑफिस में पूरी कैबिनेट लकड़ी की बनी हुई है।

जिसकी बाउंडरी घास की बनी हुई है।

और पीछे हमें विद्यार्थी बुक डीपो दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि एक टेबिल पर बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक हॉस्टल का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

होटल में टेबल और कुर्सियें दिखाई दे रहें हैं।

दुकान पर हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रही है।

फार्म हाउस में हमें एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक चीज दिख रही है जिस पे चेस जैसा--

इस तस्वीर में हमें तीन लहंगे दिखाई दे रहे हैं जो कि डमी पर पहने हुए हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे है जिसमें नकली फूल लगे है।

आसमान में कुछ बादल नजर आ रहे हैं।

इस जंगल में काफी घने पेड़ हमें नजर आ रहे हैं।

और एक वेट ब्राइट का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यहाँ बड़ी-बड़ी बेंचें रखी गई हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हैं।